हां मैग्गी के पॉकिट्स और --

एक टेबल और एक लड़का और एक लड़की --

यह एक शादी का हॉल है और शादी के हॉल में एक और उम्म --

यह एक पार्किंग लग रही है और पार्किंग में एक बड़ी सी स्कूल बस --

और बैंक पर अ दूसरा मनज़ला भी --

वहाँ से जाते हुए भी दिखाई दे रहे है।

यह एक फोटो स्टूडियो है और--

और लाइट के बाजू आजू बाजू में पा--

यह एक अअअ फूलों की दुकान लग रही है और फूल--